हमे यहाँ पर और अंधेरा भी लग रहा है बल्ब भी दिख रहे है।

यहाँ बहुत ही सुंदर -सी पटलिया दिख रही है ट्रेन की और यहाँ पर पेड़ भी बहोत सुंदर दिखाई दे रहे हैं।

और आसमान तो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा हैं।

बहोत ही सुन्दर नज़ारा दिख रहा हैं यहाँ पर बहुत ही सुन्दर स्टेशन की तीन पटरियां दिख रही हैं।